और एक डस्टबिन भी है और एक बाइक का छोटा सा टायर दिखाई दे रहा है और एक जेंट्स भी दिख रहा है। छोटा - छोटा और ट्रेन में उम -- उम ट्रेन भी खडा -- खड़ी हुई है।

मकान बन रहा है। बीम डल रही है और बहुत सारे म --

और अ तीन चार बोरियाँ भी रखी हुयी हैं। बॉक्स भी रखे हैं। तीन चार और एक राउंड बॉक्स है।

मॉल है मॉल में बहोत सारा सामान रखा हुआ हैकुछ आचार के सॉस के डिब्बे भी रखे हुऐ हैं चा --

डस्टबिन भी दिखाई दे रही हैं और दो बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

और छोटे - छोटे पेड़ भी दिखाइ दे रहे हैं।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो वाइट कल वाइट और रेड कलर की बिल्डिंग है बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे भी पेड़ लगे हुए हैं।

गैर वाली साइकिल है और --